यह फोटो खींचने वाला व्यक्ति शीशे में दिखाई दे रहा है।

और मां शाकंभरी ट्रेंड्स लिखा हुआ है।

ये कुर्सियों पर बैठें है इनके सामने छोटे छोटे कुछ काउंटर रखे हैं।

जिसके नीचे कुछ दराज भी बने हुए हैं।

साइड में एक पेड़ भी है और एक और गेट दिख रहा है।

सामने की साइड सफेद कलर के कुछ टब जैसा दिखाई दे रहे हैं।

कुर्सियों पर कुछ अलग अलग कलर के पर्दे पड़े हैं।

और इस फोटो में दो व्यक्ति के हाथ भी दिखाई दे रहे हैं।

यह फोटो किसी सरकारी अस्पताल से लिया गया है।

जो कंप्यूटर चला रहा है साइड में भी एक कंप्यूटर रखा है।